इस इमेज में किसी जगह के अन्दर का कुछ द्रश्य नजर आ रहा है यहाँ पर खिड़कियाँ बनी हुईं दिखाई दे रही है।

यहाँ पर बच्चो के बैठने के लिए एक बेंच लगी हुई है यहाँ पर एक लेडी टीचर आ रही है।

इस इमेज में किसि इमारत के अंदर का कुछ द्रश्य नजर आ रहा है।

शायद ये कोई स्कुल है यहा पर विद्यार्थी बेठे और खड़े नजर आ रहे है।